छड़े भी वहां पर है और सर पर मजबूत पीले कलर की टोपी लगाई हुई है।

ये वहाँ पर बहुत सारी लड़किया औरते दिखाई दे रही हैं जो जिम कर रहे हैं और वहाँ पर पंखे भी लगे हुई हैं ।

पत्थर रखा हुआ है छोटे छोटे पोद भी दिखाई दे रहे है।

बहुत ही अच्छे से करनी चला रहे हैं वहां मजदूर भी है बजरी भी दिख रही है सीमेंट भी है कार भी दिख रही है साइकिल भी दिख रही है मोटरसाइकिल भी दिख रही है।